ये एक कोचिंग क्लासेस दिख रही है ऊपर जीने दिख रहे है कुछ रेलिंग दिखाई गई लोहे की दुकाने दिख रही है नीचे एक बोर्ड लगा हुआ है नीचे भी एक ऊपर बोर्ड लगा हुआ --

इसमें कुछ लोग दिख रहे हैं ग्राउंड में कुछ बैग टांगें हैं कुछ बैग नही टांगें हैं कुछ लेडीजे भी हैं डाॅगी दिख रहा है।

कुछ लोग बैठे हुए हैं ई-रिक्शा में एक खड़ा हुआ है ब्लू टी-शर्ट पहन के पेड़-पौधे दिख रहें हैं आजू-बाजू में पेट्रोल टैंक दिख रहा है सामने --

एक नांव दिख रही है व्हाइट ब्लैक और उसके साइड में ब्लैक टाइप रेड और व्हाइट कुछ पेड़ दिख रहे है लम्बे लम्बे और ये पानी के अन्दर चोरी टाइप की हो रही है ग्रीन - ग्रीन सामने --